सामने ही एक और व्यक्ति है जो की जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर लाइट की तारे लगी हुई है अगल-बगल में कुछ बिल्डिंगे वगैरा भी दिखाई दे रही है।

सामने ही बहुत सारे बैग वैगरह रखे गए हैं यहाँ पर कुर्सियों पर कुछ लोग बैठे हुए हैं अगल-बगल बड़ी-बड़ी पेड़ दिखाई दे रही है ऊपर नीला आकाश --

यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है जिसके दोनों तरफ बहुत सारी गाड़ियां आती-जाती देखी जा सकती है अगल-बगल एक कच्ची मकान दिखाई दे रही है।

सामने यहाँ पे एक टेंपू खड़ी हुई है उसके पीछे एक स्कूटर दिखाई दे रहा है लोग आते-जाते साफ तौर पर देखे जा सकते है मकान कच्ची मिट्टी का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर लाइटे जलती दिखाई दे रही है नीचे कुछ टाइल्स वैगरह लगाई गई है अगल-बगल बहुत सारे यहाँ पे समान दिखाई दे रहे हैं सभी समानो को एक के बाद एक कर के सरिया कर के रखा गया है।

कपड़ा बेचने वाला एक दुकान लग रहा है जहाँ पे जीन्स वैगरह बहुत सारे रोल करके रखे गए हैं।

पीछे एक मंदिर दिखाई दे रही है। अगल-बगल बड़े-बड़े कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है जो कि अपने मोबाइल से --

और यहाँ पे कस्टमर के बैठने के लिए जो चेयर लगाई गई है उसमें दो व्यक्ति बैठे देखे जा सकते हैं उसकी दूसरी तरफ एक अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है यह देखने में --

यह रात्रि का समय है और मंदिर को लाल रंग से पेंट किया गया है अगल-बगल कुछ छोटी-छोटी पेड़ भी दिखाई दे रही है पर ज्यादातर बड़ी --

नीचे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने एक टोपी पहन रखी है ऊपर लाइट की तारे जाती हुई दिखाई दे रही है।